यहाँ पर नर्सरी का एक एक्ज़ीब्युष्ण हो रहा है इस लिए नरसरी का जो अच्छा अच्छा गाछ है सारा है उनको एक्ज़ीब्युष्ण में ले आया गया है नरसरी का मालिक भी यहाँ पर है

यह हमारे इलाका का एक बुक का दुकान है यहाँ पर बगल में ढेर सारे बुकों का स्टाल है।

ए हमारे इलाका का एक सड़क है। इस सड़क से बास लोरी कार लोग पैदल भी चलता है।

सड़क के दोनों किनारे में ढेर सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ।

इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर का काम खत्म हुआ है अब फस्ट फ्लोर का काम चल रहा है।

ये हमारा इलाका का एक टूरिस्ट सपोर्ट है यहाँ पर एक पहाड़ है इस पहाड़ के ऊपर से एक झरना दिखाई देता हैं।

एरा जगह है सुनसान है इस सड़क के किनारे पे जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत है इसके अंदर एक सुंदर सा मन्दिर भी है।

बहती हुई जा रहा है यहाँ पर ढेर सारे छोटे-छोटे पत्थर भी है यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं।

पूजा करता है यहाँ पर साईं बाबा का पूजा होता है और फुल भी चढ़ाए जाता है यहाँ पर साईं बाबा का सुंदर सा मूर्ती भी है और --

ऊपर एक सुंदर सा सोधो है यहाँ पर नेशनल फ्लैग उड़ाया जाता है यहाँ पर तिरंगा का कलर का सौधो बनाया गया है।

यह हमारे इलाका का एक सड़क है इस सड़क के किनारे में एक रिश्का स्टैंड भी है यहाँ पर पचास रिश्का स्टैंड रहता है यहाँ पर--

नेचर्स लवर लोग यहाँ पर घुमने के लिए आते है और एन्जॉय करता है।